मानव के लिए उपयोग में आते है।

होती है जैसे में बोहोत लोग भी उसकी समक्ष जाते हैं और उस सादी का आनंद भी लेते हैं |